पोस्टर भी लगा हुआ है बहुत बिल्डिंग के ऊपर काम भी चल रहा है।

एक लोहे का टेबुल जैसा लोहे का बनाया गया है कुछ मटके भी है लोहे का रंग पीला है।

यह पुल है जो कि लोहे का है।

ड्रम भी रखा हुआ है जमीन को ढलेया किया हुआ है जो कि ढला हुआ है।

बाउंड्री भी मारा हुआ है जो कि बहुत सारा पेड़ पौधे भी दिख रहा है बहुते सारा आदमी भी दिख रहा है।

बहुते सारा मशीन भी है बहुते सारा आदमीन भी है।

करकट भी लगा हुआ है जोकि लोहा भी लगा हुआ है।

एक पोस्टर भी लगा हुआ है तीन दरवाजा भी है।

बहुते सारा मकान भी दिख रहा है।

लैपटॉप भी बहुते सारा रखा हुआ है बहुते सारा कुर्सी भी रखा हुआ है।

एक धागा भी बन्हा हुआ है दीवाल का रंग व्हाइट है।

पैर भी दिख रहा है एक बैल का काउंटर जैसा बनाया गया है जो कि उसमें चरने के लिए घास भी रखा हुआ है।

एक बिल्डिंग भी है कपड़े से स सजावट किया गया है बहुते सारा पेड़--

यह एक बहुतइ बड़ा सा दुकान है जोकि एक चश्मा बिक रहा है।

दो आदमीन भी है बाहर भी बहुते सारा सामान भी टंगा हुआ है।

घर का रंग लाल है व्हाइट है।

सारा पेड़ पौधे भी है जो कि नेट बिछाया हुआ है।